वहीं पे एक खंभा लगा है जिसमें लाइट लगा हुई है।

मान ब्लू है और बादल व्हाइट कलर के दिख रहे हैं।

ये एक प्रकार से मकान लग रहा है यहां पे बहुत सी खिड़कियां दिख रही--

लाइट टूटी हुई है आसमान के जैसा दिख रहा है।

ये एक घूमने की जगह लग रही है यहां पे दो लोग हैं उनके पास एक अअ रैक बनी हुई है जो कि हर रंग की कलर है।